उसके पास एक गाड़ी है एक बिल्डिंग है।

यह एक जिम है जहां पर उम--

यह एक लड़का है जोकि पानी पी रहा है और हाथ में--

बहुत सारा पानी है ऊपर में स्टेज पे बादल दिखा--

कुछ ब्लू सी बोर्ड लगे हुए हैं।

यह एक किचन है जिसमें सामने गैस और कुकर रखा--

साथ में ए_सी लगा हुआ है वहां पर दो गिलास और बोटल रखी हुई है पास में एक नल लगा हुआ--

और कुछ बाइक्स खड़ी हैं और सामने कुछ फॉल्स दिख रहे है और साम--